आ त्याच्या समोर एक फोर व्हीलर कार दिसत आहे व त्याच्या माग खूप मोठे असे डोंगर दिसत आहेत.

व कांदाही विकायला ठेवलेला दिसत आहे.

असे सर्व साहित्य भेटत आहे असे दिसत आहे व त्याच्यासमोर दोन तीन माणसे खरेदी करताना दिसत आहे.

या चित्रामध्ये वह्या पुस्तक विक्री करताना एक माणूस दिसत आहे.

ते दोघे जन बसून एक सेल्फी काढत असताना दिसत आहेत.

राक्षसाल खाताना दिसत आहे व तिथे हे पाहण्या साठी खूप गर्दी झालेली दिसत आहे.

व त्या एक बिल्डिंग सगळी लाईटिंग केलेली दिसत आहे. व माणसे वेटर कान टोपी घालून फिरत असताना दिसत आहे.